इस तालाब में एक सीमेंट से बना हुआ छोटा सा दीवाल है।

और उसके हाथ में जिम करने वाली मशीन है।

और यहां पर बहुत तरह की लाइटें लगी हुई हैं।

जहां पर बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई है।

और उस खेल के मैदान के ऊपर लाइट लगी हैं।

और पंडालें बहोत सुंदर है।

लो से सजी हुई पंडाले हैं।

और यह बहोत सुंदर है।